एगो पार्क में के है उमे एगो झंडा हैई ग्रीन रंगल हैई झंडा रंग से लाल रंग से रंगल हैई उज्जर रंग से रंगल हई हरियर रंग से रंगल हई।

एगो गमला हई हरियर गमला हई गुलाबी गमला हई क्रीम कलर के गमला हई पानी हई एगो लाइट हई एगो गाड़ी लागल हई एगो टेबुल हई।

एगो मोटरसाइकिल हई एगो स्कार्पियो हई एगो टेम्पु हई।